और मेज पर कुछ सॉस की बोतल दिखाई दे रही है।

जहाँ पर बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक फंक्शन है जहां पर एक साइकिल दिखाई दे रही है।

अऊर एक कोल्ड ड्रिंक दिखाई दे रही है और कुछ गिलास दिखाई दे रहे हैं।

यह एक घर है जहां पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

और आसपास हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

यह एक पेट्रोल पंप है जहां पर कुछ व्यक्ति पेट्रोल डाल रहे --

यह एक अमरूद का पौध है।

यहां पर बहुत सारे अमरूद के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और एक और रोड जाने की दिखाई दे रही है।

यह एक फास्ट फूड की दुकान है जहां पर बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

और सामने कुछ डिब्बों पर कुछ लिखा हुआ है।

और सामने बहुत सारे घर दिखाई दे रहे है।

और ऊपर छत पर एक पंखा दिखाएं दे रहा है।

और आसपास हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और आसपास हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और आसपास हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और एक डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है और सामने कुछ कुर्सी और मेज भी दिखाई दे रही हैं।

और पास में एक दुकान दिखाई दे रही है।

और सामने कुछ खिड़कियां और गेट दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ प्लेट दिख रही है और कुछ बर्तन दिख रहे हैं।

यह एक राजा जी टाइगर रिजर्व है।

यह एक मेला है जहां पर बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है।

और बच्चे कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

और सामने दीवार पर कुछ चित्रण इकरे हुए हैं।

और सामने मेज पर एक बोतल दिखाई दे रही है।